ये चिमटी लाल रंग की हैं पीछे अलमारी बनी हुई है।

इसमें एक चिड़िया के जैसा झूला बना हुआ है।

इसमें कई पत्थरों को एक के ऊपर जोड़ा गया है।

कुछ मालाएं सजावट में प्रयोग करी गई है।

यहां पर तिरंगा गले में डाले हुए हैं एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है।

एक पास वाली दुकान में क्लीनिक डॉक्टर बि लाल का बोर्ड लगा हुआ है।